यहां पर सीमेंट का दुकान है। प्लस यहां पर गिट्टी वाली बगल में मिलता है। यह दुकान वाला ही बेचती होगी।

यह मुंडेश्वरी का सीन है मां मुंडेश्वरी स्थान वहां पे बगल मे नारियल फोड़ा जाता हैं आ सामने बाबा हैं।

और मुठानी स्टेशन पे देखते जैसे गाड़ी यहां पे टाइम में भी तो आप यहां से म मुठानी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं बहुत अच्छा स्टेशन --

किरान आई है सामने लग रहा है लकड़ी या कुछ भी होगा।

यहां पे जैसे पाइप हो गया या मशीन हो गया यहां पे लोग लेते हैं सीमेंट गिट्टी बालू।